एक घर के पास एक फोर व्हीलर खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक कॉलेज का चित्र है जहां पे दिन बड़े बड़े बिल्डिंग नजर आ रहे हैं बीच का बिल्डिंग पिंक कलर का है साइड का बिल्डिंग दोनों क्रीम कलर का है।

यह एक रोड का चित्र है जहां पर एक ऑटो खड़ा हुआ नजर आ रहा--

रोड के बगल में एक खजूर का पेड़ नजर आ रहा है।

यह एक पेट्रोल पंप है जहां पे बहोत सारे लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

इसमें कॉफी रक्खा हुआ है पीछे में एक दो घर दिखाई दे रहें हैं।

एक रेस्टोरेंट का चित्र है जहां पर तीन चार डाइनिंग टेबल लगे हुए नजर आ रहे है।

ऊपर में तीन चार बड़े बड़े बल्ब लगे हुए जा रहे हैं।

यह एक मंदिर का चित्र है यहां पर बहुत सारे बच्चे लाइन लगे लगा के खड़े हैं साइड में एक औरत बोतल ले के खड़ी है।

पीछे मंदिर में एक लाइट लगा हुआ है उसके ऊपर एक झंडा भी लगा हुआ।

बच्चे के स्वेटर टंगे हुए नजर आ रहे हैं दो लेडी के स्वेटर टंगे हुए नजर आ रहे--

पानी में बहोत सारे लोग नजर आ--

एक मोल का चित्र जहां पर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए नजर आ रहे हैं ।

और सबसे पहले एक ब्लू कलर का बुलेट है।

सामने में एक रेड कलर का सोफा रखा हुआ।